और एक लेडिस भी दिखाई दे रही है जो मास्क बाँधी हुई है थे इसे हम मल्टी दुकान भी कह सकते हैं जहां पर चप्पल कपड़े भी मिल जाते हैं और यहां पर पोस्टर भी लगा हुआ है।

बेन्चेस लगी हुई है जो की रेड कलर की है इसमें लोग भी बैठे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पे लाइट चमकती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर परदे लगे हुए है जो की ब्लू कलर के है।

एक्चुअली में मुझे एक मस्जिद दिखाई दे रही है मस्जिद का कलर मुझे ग्रीन दिखाई दे रहा है ब्लू कलर के कॉन्बिनेशन के साथ इसक टेक्सचर बहुत ही अच्छा और इसके ऊपर से पेंट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और सामने की और वाइट कलर की खिड़की दिखाई दे रही है।

मुझे दुकान दिखाई दे रही है दुकान के ऊपर मुझे कुछ घर बना हुआ दिखाई दे रहा है और घर के ऊपर मुझे एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर राम शौपिंग मॉल लिखा हुआ है नीचे देखने पर मुझे यहाँ पे एक दुकान दिखाई दे रही है जो की किराना स्टोर है स्टोर है।

एक बच्ची दिखाई दे रही है एक आदमी सामान जमाते हुए दिखाई दे रहा है हाल बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है इसका कलर मुझे व्हाइट दिखाई दे रहा है पंखा भी चलते हुए दिखाई दे रहा है।

वे मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है रोड ये यहाँ पे कुछ गाडी खड़ी हुई दिखाई दे रही है और मुझे यहाँ पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की पिंक कलर की है इसे हम सिनेमा हॉल भी कह सकते है क्यूकी बाहर इसमें पोस्टर लगे हुए दिखाई दे है है पिक्चरो के।

यह तस्वीर में मुझे एक मस्जिद दिखाई दे रही है मस्जिद के बाहर मुझे कुछ सामान पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पे मुझे बहुत सारे नमाजे दिखाई दे रहे है और ये मस्जिद में कुछ कॉलम दिखाई दे रहे है और यह पे पंखा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

और उसके पीछे आसमान बिल्कुल साफ सुथरा खुला दिखाई दे रहा है और यह पे मुझे कुछ इलेक्ट्रिक तार भी जाते हुए दिखाई दे रहे है।

और यहाँ पे फैन भी लगा हुआ है और यहाँ पे फर्श का कलर मुझे ऑफ वाइट दिखाई दे रहा है उपर टियूबलाइट लगी हुई है ऐ_सी भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे उसका वातावरण बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है।